काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं झूले अलग अलग प्रकार के नजर आ रहे हैं झूलो में काफी सारी लोहे की रोड दिखाई दे रहीं हैं यहां पर काफी सारे लोग नीचे दिखाई दे रहे हैं यहां पे काफी सारी दुकानों दिखाई दे रही हैं।